और ये जो सूरज जो निकलता है इधर से इसे देखना एक अलग ही नजारा होता --

जहां हर संडे के दिन हजारों की तादात में लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं।

जिसमें आपको टू बीएच थ्री बीएच और वन बीएचके के फ्लैट आसानी से मिल जायेंगे।

उस गांव में जैसे ही आप घुसते है प्रवेश करते है तो वो बहोत ज्यादा महकता है।

यहाँ बच्चों से लेकर बुढों तक के कपड़ें अच्छे दाम पर मिल जाते हैं।

ऐसा भी मैंने सुना है क्योंकि ये जगह ही ऐसी है बड़ी खूबसूरत जगह है।

ये बहोत अच्छे स्कूल है यहाँ का रिजल्ट ही बहोत अच्छा आता है।

जैसा अब किसी और ही बैंक में चले जाइए जहाँ की सर्विस देखिए --

उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है।

और इसके पास में लोगो ने स्किन कार्ड दिए --

पता नहीं मुझे पीछे से सारा दॄश्य देखने में क्या मजा आता है।